दो बत्तख भी नजर आ रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

दीवाल पे एक एल_सी_डी लगा हुआ है।

बहुत सारे ट्रे चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

बॉडी लोशन भी नजर आ रहा है।

दीवारों का कलर व्हाइट है।

दृश्य मे एक बहुत बड़ा साइकिल का दुकान नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक पार्क नर्सरी दिखाई दे रहा है।

कुछ गुलदस्ता भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे लाइट से सजावट किए गए हैं।

बहुत सारे लाइटें भी लगी हुई है।

दरवाजे भी शीशे के लगाए गए है।

बाहर में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

लाइटें भी लगी हुई हैं।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

दीवारों का कलर व्हाइट है।

पौधे भी नजर आ रहे हैं।

पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।